कम दवाइयां बेहतर स्वास्थ्य है लिखा हुआ है यहां पे पीछे पेड़ भी देख रहे--

और यहां पे भीड़ भी लगी हुई है।

ये हां भी आप देख सकते हो।

और एक आदमी ने सफेद रंग का परना बांध रखा है।

और यहां पे आप देख सकते हो झंडा भी लगा हुआ है।

पैरों के जूते पेहन रखें हैं और पीछे आप देख सकते हो पानी दिख रहा हैं।

यहां पे आप देख सकते हो--

और यहां पे पार्क भी दिख रहा है।

यहां पे आप देख सकते बहोत अच्छा लग रहा है।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

ये यहां पे आप देख सकते हो--

और यहां पे एक आदमी खड़ा है।

और अंदर गाड़ी अभी खड़ी हुई हैं।

और यहां पे बहुत सारे आदमी भी खड़े हैं औरत भी खड़े हैं।